बोहोत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ वाइट कलर के कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे भी खड़े हुए दिखाई दे रहे।